यहां पर राजमिस्त्री के काम हो रहा है। जहां पे बहोत सारे--

एक बहोत बड़ा घर है घर के ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है।